यहाँ पर ये एक मछली बाजार का द्रश्य है। जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पड़ी हुई हैं कुछ लोग उन्हें बेचने का काम कर रहे है।

यह एक अ अ रेल गाड़ी का इंजन है।

यह एक पानी की जगह का दृश्य है जो कि अ अलग अलग उसका किनारा है। यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

येह किसी घाट की च् जहाँं पे कुछ सीढ़िया बनी हुईं हैं बड़ी-बड़ी और यहाँ पे उसके नीचे पानी है।

यहाँ पे कुछ घास है वो बड़ी ही हरी-हरी है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग है जो शायद एडमिशन के लिए आये हुए हैं।

इस खुले मैदान में बहुत से लोग हैं। कुछ लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे यूँ ही बैठे हुए हैं।

यह एक किसी जगह का छोटा सा फवारा है और यहाँ पे बहुत सारी लायटिंग होके रखी हुई है।

यहाँ पे एक इंसान अ-उम कुर्सी पर बैठा हुआ है उसके पास में एक बी.पी. की मशीन भी पड़ी हुई है।

इस घर का रंग सफेद है और यहाँ पे बहुत सी रौशनी हो रखी है| बाहर एक बस पड़ी हुई है और कुछ लोग बाहर खड़े हुए है।

यह एक सड़क का दृश्य है जहाँ पे बोहोत से सामने स्कूटर अ रखे हुए हैं। आसपास में एक लकड़ी की कुर्सी --

कुछ यहाँ पे अ एक्सरसाइज करने की अलग ही मशीनें हैं और ये स कुछ काले रंग और सिल्वर रंग की हैं।

यह एक छोटी सी नदी का दृश्य है। जहाँ पे शाम का वक्त है और यहाँ पे बहोत सारी नावें --